इस छायाचित्र में एक नदी दिख रही है। नदी के दोनों तरफ बड़े-बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ के ऊपर हरियाली दिख रही है।

इस छाँयाचित्र में बहोत बड़ी नदी दिख रही है | नदी पर एक बड़ी नाव दिख रही है | ऊपर खुला आसमान है और सूरज चमक रहा है।

इस छायाचित्र में चारों तरफ काफी हरियाली दिख रही है बीच में पानी से भरा हुआ एक छोटा तालाब दिख रहा --

इस छायाचित्र में एक लाल लाइट दिखाई दे रही हैं। लाल लाइट एक सफेद लोहे के खंबे पर लगी हुई हैं।

कुछ व्यक्ति अपनी नृत्य कर रहे हैं तथा कुछ व्यक्ति नीचे कुर्सी पर बैठकर उन्हें देख रहे हैं।